इस तस्वीर में मुझे कुछ प्लेट दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक ट्रक दिखाई दे रहा हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे झुके ही रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक टॉवर दिखाई दे रहा हैं।

इस तस्वीर में मुझे कुछ बैंच दिखाई दे रही हैं।

यहां मुझे कुछ पुरुष दिखाई दे रहे है।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

इस तस्वीर में मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।